और इस स्कुल में सारे स्टूडेंट्स लोग मिल के एक ग्रुप वाइज --

और ये वनों का विस्तार काफी अधिक दुरी तक लग रहा है अगल-बगल सामने बहुत ही बड़े-बड़े पेड़-पोधे छोटे-छोटे पौधे --

और मुस्लिमो में ऐसे होता है की --

कुछ स्टॉल्स वगैरा लगे हुए हैं खाने-पीने के फास्टफूड के।

पता नहीं ए तो अच्छे से दिख नहीं रहा है की ताजमहल है की क्या है।

सभी एक ड्रेस में है एक इनकी हेड है जो व्हाइट --

यह एक म्युज़िक प्लेस है।